देख रहे होंगे एक टंकी वाइट कलर की रखी हुई है और यहाँ पाइप वाइप भी मिल जाएंगे और एक चींज देख रहे होंगे साधु जी की एक दुकान है और वह कलर पोता उसमें ब्लू और वाइट है।

घी का डब्बा अ मिलता है यहां पर और देख रहे होंगे ब्लू कलर की यह छतरी टाइप में बनाएं हुआ है एक बोर्ड लगा हुआ है पेड़ देख रहे होंगे एकदम मस्त है ।